कोई रूम पूजा वूजा का होगा ।

ये कागज का फूल बनाया हुआ है। डिब्बा बॉक्स की तरह बनाया हुआ है। लम्बा-लम्बा बनाया हुआ है। कुछ गुलाब है। कुछ-कुछ सब बच्चे रंगीन कागज का बना फूल रखे कटवा सब की तरह और सब कलर भी ठीक लग रहा --

अच्छा ही लग रहा है ठीक है।

ये सोनपुर मेला का लगा हुआ है। दो हजार उन्नीस बोर्ड में लिखा हुआ है। बगल में मेला सब लगा हुआ है। रंगीन सब हॉल लगा हुआ है।